यह किसी हॉस्पिटल का फोटो है जहाँ बोहोत से पुरुष और एक महिला कुर्सी पर बैठी नजर आ रहे है उनके सामने एक टेबल भी लगा हुआ है सभी लोग अपने आगे एक कॉफी खोल कर बैठे हुए है।